इस तस्वीर में मुझे कुछ दुकान दिखाई दे रहे हैं।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

यहां मुझे बिजली की तार दिखाई दे रही--

यहां मुझे दो महिला दिखाई दे रही है।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

इस तस्वीर मे मुझे एक कमरा दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे कुछ चट्टान दिखाई दे रही है।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

इस तस्वीर में मुझे किराने का सामान दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक नाव दिखाई दे रही है।